एक नबर का टेम्पो भर रखरऊ नो करके दिल उलटो बनाय रक्खा टेम्पो में चढ़ जा लग रा है ड्राइवर और एक बुड्डा कुछ बेचता फिर रहा है बिचारा जिसके ऊपर है।

चेक्स का कर रहा है कपड़ो को पता नी केरा लगा भाई का कपड़ो में